यह पिक्चर एक हॉल की पिक्चर है यहां एक जिम सेंटर खुला हुआ है यहां चारों साइड जिम करने की मशीनें लगी हुई हैं ऊपर छत मे सीलिंग फैन लगा हुआ है।

फ्रंट मे कांच का गिलास लगा हुआ है कुछ लिखा हुआ है रिवॉल्विंग चेयर के बगल मे--

यहां अलमारीयों में तरह तरह के मोबाइल के एसेसरीज सजाए गए हैं।

और सफेद कलर का भी कलर हुआ है नीचे टाइल्स भी --

गाड़ी की साफ साफ झलक भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र मे एक कार को दिखाया गया है कार के दोनो पहियों मे --

कुछ लगा हुआ है। आगे के पहियों में पीले कलर की पन्नी चढ़ी है पीछे के पहिए में सफेद कलर की पन्नी चढ़ी है।

पर छपाई नहीं हैं और कार के उधर साइड कुछ कबाड़ भी पड़ा हुआ--

यह चित्र कहीं समुद्र के किनारे का चित्र दिख रहा है।

टोकरी है एक महिला साड़ी पहनी हुई है फर्स में बढ़िया टाइल्स लगी हुई है ऊपर मल्टीकलर का आसमान दिख रहा है।

उनमें से कुछ महिला भी हैं कुछ पुरुष भी हैं महिला के द्वारा साड़ी पहना गया है।

नारे साइड महिलाएं बैठी हुई हैं कलरफुल साड़ी पहन कर --

यह चित्र एक मिठाई के दुकान का चित्र लग रहा --

एक टायर मे नीले स्टीकर लगे हैं।

यह फोटो एक मॉल जैसी प्रतीत हो रही है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बहोत सारी दुकाने हैं नीचे सेकंड फ्लोर में भी बहोत सारे दुकान हैं।

इस मॉल का कलर सफेद बनाया गया है मॉल के ऊपर गुंबज भी दिख रहे हैं।

इस स्टोर में सैमसंग की टीवियां लगी हुई हैं।

ऊपर सीलिंग फैन भी लगा हुआ है सीलिंग मे लाइट भी लगी हुई है।

इस फोटो मे हम देख रहें है कि एक ट्रेलर के ऊपर --

हरे- भरे पड़- पौधे दिख रहे हैं किनारे साइड ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

यह एक उद्यान टाइप की जगह है यहां प--

इस चित्र में हम एक पेट्रोल टंकी को देख रहे है एक पेट्रोल टंकी का वाहन खड़ा हुआ है जिसमें पेट्रोल आता है।

पैर के नीचे उसके लाल कलर कारपेट दिख रही है।

पांचों अलमारी के पांचो खानों में समान भरे हुए हैं।

इस चित्र में हम तीन मंजिला बिल्डिंग दिख रहे हैं।

ऊपर की बिल्डिंग मे कोको- कोला का बोर्ड लगा हुआ है।

के नीचे स्प्लिट ऐ_सी का आउटडोर लगा हुआ है।

एक टोपा लगाया हुआ खड़ा है एक व्यक्ति हाथ में झोला लिए हुआ खड़ा है।

सामने बहुत सारे आदमी खड़े हैं एक व्यक्ति दाढ़ी लगाए हुए खड़ा है एक व्यक्ति लूंगी पहने हुए खड़ा है।

टिकट काउंटर लाल कलर के कलर से लगा हुआ है।

अंदर साइड भी कुछ और दिख रहा है ऊपर नीला आसमान दिख रहा --

दुकान के बगल में दुकान और लगी हुई है उधर टिन का सेड लगा हुआ है।

यह चित्र में हम जिम करने की मशीन देख रहे हैं।

यह चित्र मे पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है चारों साइड --

नारे किनारे छोटे छोटे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

ऊपर सीलिंग में चौकोर लाइट दिख रही है जो सफेद कलर की दिख रही है।

पिक्चर में एक हम हरे -भरे पहाड़ को देख रहे हैं ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हरे-हरे कलर के दिख रहे हैं।

इस चित्र में हम एक स्कूल को देख रहे हैं स्कूल दो फ्लोर में दिख रहा है।

रेलगाड़ी के डब्बे हल्के ब्राउन कलर से कलर हुए हैं।

रेलगाड़ी में झालर भी लगाई गई है किनारे- किनारे हरे पेड़- पौधे ऊपर --

सुंदर-सुंदर घांसे लगी हुई हैं पेड़-पौधे लगे हुए हैं किनारे साइड हल्की-हल्की कटीली झाड़ियां दिख रही हैं और इधर किनारे साइड देखें तो कुछ लाल-लाल सा दिख रहा है।